एक पीला और लाल हरि ये रखे हुए कूड़ेदानी है और बाल्टी भी रखे हुए है यहां पर य--

होटल खुले हुए ह और दो आदमी अ कुर्सी प अपने बैठे हुए है।

यह एक ऐसी दृश्य दिखाई दे रहा है देखने से लगता है कि यहां पर मेटका वेटका कु--

और भी कोई पौधा है जो कि थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है और यहां पर पौधे को रख कर फोटो खींचे गए हैं।

चिल्ड में पेड़ पोधे लगे हुए है और--

और चार आदमी भी यहां पर खड़े हुए हैं देखने से लगता है कि यह नाइट का फोटो --

यह एक ऐसी दृश्य दिखाई दे रहा है देखने से लगता है की यहाँ पर कुछ चीज़ का--

ग्राउंड है जहां कि यहां पर से बच्चों की चिलचूलियां खेलने वाला भी जगह हैं।

शादी विवाह की तैयारी चल रही है और यहां पर मंडप--

फोटो देखने से पता चलता है कि यहां पर एक मोटरसाइकिल आए हुए हैं।

किया जगह है एक जिसमे अमरुद एक किलो पर फोटो गिचे हुए है।